मैडम भी है जो इन्हे यहाँ पर क्लास लगा रखी है।

गर्मी के समय का फोटो है ये सभी चरच के यहाँ पर फोटो क्लिक करवाते हुए दिखाई दे रहें हैं।

तालाब दिखाई दे रहा हैं यहाँ पर पानी खड़ा हुआ हैं पास मे हरे-हरे पेड़ दिखाई दें रहै हैं।